इसतीयार लगे हुए हैं गाड़ी खड़े हुई हैं लोग अपने--

ये एक समुंदर है यहां पे लोग मंत मुरादे मांगने आते है जिसके पीछे बतियां लगी हुई है ऐं म --

यहाँ पे लोग आये हुए है के लिए ।

यहां पे लोग इबादत कर रहे हैं यहां पे रेड टोपियां लोग बच्चों ने पहनी है नीगल मैन आया है।

नीला हुबसुहा है लाहों सद गुलाब्बे पौधे है यहाँ पे बहुत कुछ है यहाँ पर--

दुकाने बनाई गइ है दिवारे है इसने--

बड़े अच्छे से कमरे को सजाया हुआ खिड़की है।

तस्वीरें लगाई हुई हैं दीवारें हैं इसमें बत्तियां जल रही हैं बत्तियां बहोत प्यारी लग रही हैं।

यहाँ पत्थर लगा हुआ है पत्थर बहुत खूबसूरत है पत्थर मे डॉट है ।

डु कारे है दवारे है है बखिया चल रही है ।

ये एक तस्वीर है यहाँ पे प्रयस्त है यहाँ पे सब्ज़ा नज़र आ रहा है ब--

ये एक कमरा हैं इसपे दीवारे हैं उम--

इसमें कुर्सिया राखी हुई हैं ह इसमें--

ये एक हौलूमा है ये बहुत खुली जगह है इसमे कमरे भी है ।

कोइ खेतो वाले जगह पे इकठठे हुए हैं घर बन--

बहुत खुबसूरत मटेरियल लगा हुआ हैं कमरा वो--

ये अमारत है इसके आगे खुला मैदान छोड़ा गया हुआ है लॉज में खेलते हैं बच्चे खेलते हैं।

यह बड़े लोग भी खड़े है माँ-बाप भी खड़े हैं वो--

सड़का है इसमे बहुत प्यारी पौधे है ये एक बिर ये एक--

मजदूरी कर रहे है मजदूरी करते हैं लोग दो--

लहसन लगा रहे हैं दीवार को तोड़ रहे हैं।

अम्म सब्ज़ रंग का आया है आसमान हुआ वा है सफेद और रंग का इसमे--